पत्थर के साइड में एक आदमी खड़ा हुआ है नीली शर्ट पहने हुए।

बाहर की साइड में बहुत सारे चेयर्स रखे है जिसमे खाना खा रहे है सब और कुछ खड़े हुए है।

और एक पिंक कलर का टेंट लगा हुआ है राज महल के सामने।

दूसरे गेट के पास में एक विंडो लगी हुई है स्काई ब्लू कलर की।

ऊपर की साइड में तीन विंडो लगी हुई है जिसमें नीले कलर के कांच के शीशे डले हुए हैं।

के साइड में एक ब्लैक बोर्ड व्हाइट ब्लैकबोर्ड और उसके पीछे साइकल दो चेयर्स कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीन बच्चे खड़े हुए हैं।

यहां पर ये लेडीज की दुकान है।

यह दुकान जली कोठी मेरठ के अंदर है।

साइड में द्रास के नाम से एक दुकान है जिसके शटर बंद हुए हैं।

और सामने की ओर एक बिल्डिंग है जिसके पास में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है पीछे के ओर बहुत सारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग पर एक छोटी सी सीढ़ी लगी हुई है।

इस पिक्चर में दो मशीने रखी हुई है जिसका नाम कंप्रेशर टेस्टिंग मशीन है और उस पर एक घड़ी भी लगी हुई है।